इस तस्वीर मैं हमे एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है। जो की एक बी बी कार्यालय सा नजर आ रहा है। व उसके सामने हमे एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे हमे एक घर नजर आ रहा है जिसके सामने एक सफ़ेद रंगकी बस खड़ी हुई है इस बसके सारे पर्दे लगे हुए है जो की हरे रंग के है।

इस तस्वीर मैं हमे एक काफी भीर-बार से भरी हुई सड़क दिखाई दे रही है। जिसमे हमे काफी सारे चार पहिया वाहन नजर आ रहे है।

ते पीछे एक मंच लगा हुआ है जो की काफी सजा हुआ है व उसके आगे काफी सारी कुर्सिया रखी हुई है जो की सफ़ेद पर्दे से ढकी गई है।

इस तस्वीर मे हमे एक चट्टान दिखाई दे रही है। जिसके नीचे से उसका एक द्वार सा बनाया हुआ है। उस द्वार के दोनों तरफ पिल्लर लगाए हुये है। वह उसके --

बाहर हमे तीन व्यक्ति एक ने बेगनी दूसरे ने पीली व एक ने काले रंग की टीशर्ट पहनी हु --

वह उसमे अंधेरा छाया हुआ है। इस तस्वीर मैं हमे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। वह चट्टानों मैं काई जमी हुई है।

यह तस्वीर मे पीछे हमे काफी बड़ी दो मंज़िला इमारत दिखाई दे रही है जिसमे काफी सारी खिडकिया देखने को मिलती है।

इस तस्वीर मे एक उची चट्टान दिखाई दे रही है जिसमे हमे अंदर जाने का द्वार दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर भी एक मंज़िला द्वार बना हुआ है जिसके ऊपर आकृतिया काफी सारी उकेरी गयी है नीचे साइड मे काफी बड़ी बड़ी प्रतिमा भी उकेरी गयी है।

इस तस्वीर मे हमें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दे रही है जिसके निचले हिस्से मे एक बड़ी सी इमारत उकेरी गयी है।

इस तस्वीर मे हमे एक उचि पथर की चट्टान दिखाई दे रही है जिसके नीचे हमे एक हिस्सा गुफा जैसा लग रहा है जहा पर काफी अलग अलग शेप की चट्टाने मौजूद है।